यहां पर बहोत सा सामान दिखाई दे रहा है।

जिसपर बस्तर डेरी फार्म लिखा हुआ हैं।

बच्चों के पैंपर्स दिखाई दे रहे हैं।

कच्चा पुल और एक पक्का पुल बना हुआ है।

पोस्टर भी लगा हुआ है।

इसे बनाते हुए नजर आ रहे हैं।

यह कुछ बाध्य यंत्रों की दुकान दिखाई दे रही है।

शर्ट पहनी हुई हैऔर यह सेल्फी फोटो ले रहा है।

कुछ रंगोली बना रहे हैं।

यह एक टूरिज्म प्लेस दिखाई दे रहा है जहां एक।

खंबे बिल्डिंग के लिए खड़े किए गए हैं।

यहां कुछ पुराने से ।

सामने वाली पहाड़ी पर बहुत से।

घना जंगल दिखाई दे रहा है और लाइट्स की तारें--

यह कुछ जंक फूड की दुकान दिखाई दे रही है और जिसमें बहोत से--

जहां पर काले और हरे रंग के अंगूरों के ढेर दिख रहे हैं।

यह बुद्धिस्ट लोगों के।